यह दृश्य एक नदी का दृश्य है ऊपर की तरफ आसमान दिखाई दे रहा है नदी में पानी भरा हुआ है बाहर की तरफ।

द्रश्य एक स्कुल का द्रश्य है इस स्कुल के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड पे त्रिनिँटी एंगल्स स्कूल स्कुल सी.बी.एस.सी. कुररिकुलम लिखा हुआ है स्कुल के रंग लाल है।

ये हुए है और दूसरी तरफ इसमें पेड़ पोधे भी दिखाई दे रहे हैं ऊपर की तरफ पानी की टंकियां भी दिखाई दे रही है घर का रंग हरा और पीला भी दिखाई दे रहा है।